मुझे इस तस्वीर में एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

आसपास कई सारे लोग भी बैठा हुआ है।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

सामने में एक दरवाजा और कई सारी खिड़कियां भी हैं।

सामने में एक दरवाजा भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक सांड दिखाई दे रहा है।

ऊपर में कई सारी इलेक्ट्रिक वायरस भी हैं।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

और कई सारे आइना भी लगाया हुआ है।

और कटिंग भी लगाया हुआ है सामने में एक स्टूल भी है।

सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

सामने में कई सारे बच्चे के बैग पे रखा हुआ है।

कईं सारे कुर्सियां भी रखा हुआ है।

सामने में एक सड़क भी हैं प्रोफेसर लगा हुआ है।

सभी लोग मास्क पहन के हैं।

लाईट बल्ब भी लगाया हुआ है।

सामने में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट भी लगाया हुआ हैं।

आस पास कई सारे तख्ते के पेज भी रखा हुआ है।

ब्लू कलर का त्रिपाल भी रखा हुआ है।

हाथी के नाक के ऊपर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

जिसने व्हाईट टी शर्ट जींस पहना हुआ हैं।

आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी है।

पास में ढेर सारे लोग दिख रहे हैं।

इसमें सीढ़ीया भी है और कई सारे फूल के गमले भी रखा हुआ है।

आसपास कई सारे फूल के गमले में रखा हुआ है।

दीवार पर एक फोटो फ्रेम भी लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के कलर ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।